यहाँ बड़े बड़े होल्डिंग दिखाई दे रहे है होल्डिंग पे आलिशान लिखा हुआ है।

चबूतरे पे पीपल का पान बना हुआ है अशोक चक्र दिखाई दे रहा है कुछ फूल दिखाई दे रहे है।

यहा एक कत्थे कलर की डी-पी दिखाई दे रही है उसके आजूबाजू बहुत सी गाडीया लगी हुई है एक व्हाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक सीडी दिखाई दे रही है कुछ पिल्लर दिख रहे है बड़े पत्थर दिख रहे है पानी पे घास उगी हुई है।

दीवार पे एक जोकर की तस्वीर बनी हुई है। एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दिख रही है। काले कलर की बेसिन दिख रही है।

यहाँ एक गुफा दिख रही है कुछ लकड़ियो के पोल सपोर्ट मे लगे हुए--